शटर दिखाई दे रही है सामने मैदान दिखाई दे रहा है एक खंबा दिखाई दे रहा है और उसमे बिजली की तार भी दिखाई दे रही है।

तीन गॅस सेट लगा हुआ है नीचे कुछ सीढ़िया दिखाई दे रही है नीचे अंधेरा भी दिखाई दे रहा--

एक बड़ी पेटी सी भी दिखाई दे रही है एक खंबा भी लगा हुआ है एक रोड है।